पीछे में मुझे आसमान भी नजर आ रहा है पीछे में मुझे बादल भी नजर आ रहा है।

मुझे इस तस्वीर में शिशा भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे प्लास्टिक चेयर और टेबल सब भी नजर आ रहा है।

पीछे में मुझे बहुत सारे आदमी भी नजर आ रहा--

इस तस्वीर में मुझे गाड़ी की रेस दिखाई दे रहा है इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे आदमी खड़े होते हुए भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहा है।

ठेला गाड़ी के ऊपर मुझे बहोत सारे बड़े बड़े कार्टून रखा हुआ भी नजर आ रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे कपड़ा दुकान नजर आ रहा है मुझे इस तस्वीर में बहुत सारे कपड़ा रखा हुआ नजर आ रहा है।

एक घर के ऊपर में मुझे बहोत सारे कपड़े लटकते हुए नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे पीछे में बहोत बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे मैगी पैकेट रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बच्चा लाल कॉलर की स्वेटर पहनते हुए भी नजर आ रहा है।

पीछे में मुझे दो घर भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे लोहे से बनाया हुआ गेट भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे घास भी दिखाई दे रहा है।